दो बड़ी-बड़ी चट्टानें बीच में छोटे तीन चट्टान हैं।

लगता है ये अंकल फिरने आए हैं।

ये घर का रूम है यहाँ पे--

और यहाँ पे सेम कलर हैं हरा और सपेद कलर है।

चार छोटे और बारा बड़े स्पीकर लगे हुए हैं।

और दो छोटे छोटे झाड़ हें।

और यहाँ पे कोयले के मोटे बांदे हैं।

बैर है और लपटी हुई है एक बंडल है।

आप ये फ़ोन रखें और मैं इनकी बाल काटूँ।

वहाँ पे एसी है बेड है --

पाँच सात लोग योगा कर रहे हैं।

नीचे चादर बिछी हुई है और फैन चालू--

यहाँ पे बहुत बड़ा समारोह चल रहा है।

और यहाँ पे बड़ा निचे मैट बिछाया हुआ --

पाँच लोग स्टेज पर नाच रहे हें।

यहाँ पे टोल हे और कु--

तो दरवाज़े भी बंद हैं और वहाँ पे कोई नहीं है।

बाई तरफ और सीधी तरफ फुल दान रखे हुए है बिच में सोफा रखा हुआ है।

चांरों और टेबल रक्खे हुंवे हैं।

यहाँ पे बहुत बड़े बड़े झाड़ हैं और नीचे घांस हैं।

ठंढ़ा रक्खा हुआ है उप्पर।